इस चित्र में एक पत्थरों की दीवार दिखाई दे रही है।

उसके सामने दो आदमी भी खड़े हैं पीछे कुछ और भी बने हुए हैं।

इस चित्र में एक साड़ी दिखाई दे रही है उस साड़ी के ऊपर के कई कलर्स के और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं।